इन सभी लोग कपड़े खरीदने दुकान के ले दुकान जाते है।

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग का टी शर्ट पहेना हुआ है।

दिखाई दे रही है काफी मिर्ची दिखाई दे रही है अदरक दिखाई दे रही है बैगन दिखाई दे रहा है।